उसमे कोरोना का जांच चल रही है और ऊपर ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है जोकि डबल आठ डबल वन नाइन फाइव सेवन वन जीरो टू है।

पिक्चर में बहुत से लोग एक हॉल में प्लेग्राउंड जैसा एक हॉल है उसमे डांस कर रहे है गरबा वाला।

नमकीन वगेरा है और एक वक्ती खड़ा हुआ है जोकि दुकान का मालिक है।

यहा पर वलकोमे गेट लगा हुआ है जिसपे लिखा है बाबु बोट घाट एक व्यक्ति रहा बाइक भी खड़ी है।

यह एक हरा भरा खेत दिखाई दे रहा है जिसका रंग हरा है और पीछे पेड़ भि दिखाई दे रहे है।